एक व्यक्ति सफेद रंग की गाड़ी के साथ खड़ा है।

यहां पर एक औरत बीच में उनकी देखरेख के लिए भी खड़ी--